साइड में एक सफेद रंग का पाइप भी है।

पर्दा टाइप से ऊपर से गिरा है जो कि नीला और सफे--

यह दृश्य चाय के कप का है जिसमें चाय भरा हुआ है।

नीचे में भी कुछ ड्रेस रखे हुए हैं साइड में बैलून लगाये हुए है जोकि--

पीछे दीवार का कलर गुलाबी दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य सरस्वती पूजा की पंडाल का है।

नीचे में तीन चार चेयर लगाई हुई है जो कि क्रीम कलर और लाल रंग की दिखाई पड़ रही है।

खा लगाया हुआ जोकि सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा है।

साइड में बहोत सारे बैलून लगाए हुए हैं बैलून का कलर लाल ऑरेंज और सफेद है।

इस दृश्य में दो पोस्टर लगाए हुए हैं ऊपर में दुल्हन कौशन लिखा हुआ और नीचे राधा ब्यूटी पार्लर --

इस दृश्य में केबिन दिखाई पड़ रहा है जिसके पीछे एक कुर्सी लगाया हुआ है और उसेपे एक टॉवल डाला हुआ है।

वो मरून और पीले रंग के हैं उसेपे सफेद रंग से कुछ लिखे हुए हैं।

इस तरह से हमे एक सिंगार स्टोर दिखाई पड़ रहा है जहां पर आगे में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

ऊपर मे बहुत सारे पर्स वगैरा रखे हुए हैं ऊपर में दो मोर के पंखुड़ी रखे हुए हैं।

पीछे की दीवार सफेद रंग की है ऊपर में एक बल्ब लगाई हुई हैं।

आगे में तीन बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए जो की सफेद रंग के हैं और उस पे कुकर का पिक्चर बनाया हुआ है।